यह एक नदी है इसमें एक बड़ी शिप है जिसमे कुछ टायर लगे हुए हैं।

जिसके सामने एयरटेल फोर जी की शॉप है उसके सामने एक बाइक भी है।

इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। सुधा डेयरी का।-

यह एक सर्विस सेंटर की पीक है जिसमे एक रेड कलर की गाड़ी दिख रही हुई है उसकी सर्विसिंग हो रही है।

इसमें ए एक व्यक्ति उसकी छत पर खड़ा हुआ है। दो व्यक्ति नीचे दिख रहे हैं।

यह किसी रेस्टोरेंट की पिक है न-जिसमें तीन टेबल्स हैं बहोत सारी लाइट्स हैं कुर्सियां हैं।

ये किसी फ्लावर शॉप की पिक है इसमें गिफ्ट के लिए फ्लावर सजावट के लिए फ्लावर्स सब कुछ मिलते हैं।

यहाँ किसी मछली शॉप की फोटो है इसमें बहोत तरह की मछलियाँ हैं छोटी बड़ी सब तरह की इसमें कोई व्यक्ति मछलियों को ले जा रहा है।

यह किसी शादी हाल की बाहर की पीक है मैन गेट की इसमे कुछ व्यक्ति खड़े हुए है। इसके बहोत ----

यह किसी लेक्चर देने वाले हॉल की पिक है।

यह किसी मेले मे रात की फोटो है जिसमे बहुत सारी लाइट जल रही है इसमे बहुत सारे लोग है इसमे एक झूला चल रहा है।